खूबसूरत पार्क है यहा पर आस पास बड़े-बड़े झाडीओ वाले पेड़ लगे हुए है इनके ऊपर कुछ मरून और व्हाइट कलर का इनके के ऊपर पेन्ट किया गया है सामने की तरफ एक बड़ी सी मूर्ति रखी हुई है बु--

अलग अलग टाइप के अलग अलग पत्तों वाले पेड़ है धूप निकल रही है धूप की अक्स जमीन के ऊपर पढ़ रहा है जिसकी वजह से परछाई हो रही है पीछे की तरफ बड़ा सा पहाड़ बना हु--

तालाब बहुत सारा पानी भरा हुआ है बहुत लोग अपना-अपना पानी से काम कर रहे है सामने की तरफ एक बड़ा सा हाथी खड़ा हुआ है जिसका ग्रे कलर है दो बड़े-बड़े दात है उसके व्हाइट कलर के दातो के ऊपर कुछ रिग जैसे लगे हुए है लोहे के।

के बीचो बीच एक गठ्ठा है यहाँ पर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है बहुत सारी गाड़िया खड़ी हुई है सभी टू वीलर गड़िया नजर आ रही है ग्लासेस लगे हुए--

बड़े-बड़े खूबसूरत से पेड़ लगे हुए है एक पेड़ में बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए है पीछे की तरफ एक बडी सी बस खड़ी हुई है जिसका रेड कलर --

बड़ासा मैदान है इस मैदान के अंदर बहुत सारे लोग चल फिर रहे यहा से वहा घूम रहे है एक बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ बनाया गया है उसको कुछ आकार दिया--

जानवर जैसा बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है छाया मे लोग खड़े हुए है आसपास बहुत सारे पेड़ है कुछ बेंचेस लगे--

टाइम है धूप बहुत तेज निकाल रही है आसपास बड़े-बड़े अ पेड़ लगे हुए है कुछ झाड़ियों वाले है कुछ अलग से है कुछ पेड़ सुख रहे है बहुत--

की सड़क बनी हुई है साइड मे कुछ पेड़ लगे हुए है कुछ बेरिकटेस लगाये गए है ब्लॉक करने के उनके ऊपर स्टॉप लिखा हुवा है।

ये जमीन है यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है ट्रैक्टर वगेरा चलाया हो सारी जमीन उखड़ रही है पेड़ लगाए गए है कुछ झाडीयों वाले पेड़ है कुछ अलग अलग टाइप के पेड़ लगे हुए है।